यहाँ पर एक पत्थर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर में एक लड़का बैठा हुआ है सामने की तरफ में पहाड़ देखी जा सकती है।

एक लड़के को देखा जा सकता है जिसने ब्लैक कलर की पंजाबी पहैन रखी है और आप ने गले में गमछा लगा रखा है।

व्यक्ति ने एक ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है सामने एक डैक्स दिखाई दे रहा है।

एक बहुत बड़ा -सा चिमिनी जैसा कुछ चीज बना हुआ हैं।

अगल-बगल में बहुत से यंत्र लगे हुए नजर आ रहै है।

अगल - बगल में कुछ लोगों को देखा जा सकता है यह देखने में काफी सुन्दर लग रहा है सामने एक पेड़ भी नजर आ रही है।

एक लड़का है जिस के हाथ में एक ऑरेंज कलर का कुछ धुआँ जैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है इस ने अपने सर को नीचे किये हुए हैं।

यह कोई डांस परफॉर्म करते हुए नजर आ रहै है।

सामने के तरफ में कुछ स्टेयर जैसी बनी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए कुछ लोगो को देखा जा सकता है।

फोम का कैरेट बना करके रखा गया है साइकिल की परछाई दिखाई दे रही है।

कुछ सामने रखी हुई है यह लड़का सेल्फी लेते नजर आ रहा है इसने काले रंग की शर्ट पहेन रखी हैं।

घासें भी दिखाई दे रही है अगल बगल में --

और यहाँ पर एक चक्का निकला हुआ भी देखा जा सकता है पीछे की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई हैं।

पीछे के तरफ में कुछ पेड़-पौधे को देखा जा सकता है।